यहां मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

यहां पर दो गाड़ी भी खड़ी हुई है वाइट कलर की।

यहां मुझे बहोत सारा सामान रखा दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे गमले रखे दिखाई दे रहे हैं।

वाइक पर आदमी भी है दुकानें भी दिखाई दे रही हैं।